और यहाँ पर रेतों के ढेर भी लगे हुए हैं।

और बहोत सारी चीजें पड़ी हुई हैं।

मॉल की जो सीलिंग है वो बोहत ही ज्यादा सुन्दर है।

एक आदमी और औरत बैक एक रस्सी औरत और एक रस्सी आदमी पकड़े हुए चले आ रहें है।

यहाँ पर एक आदमी बहुत सारे बफैलोस को एक साथ ले जाते हुए नज़र आ रहा है।